दोनों ओर गमले और पौधे लगे हैं।

दीवारें सफेद लाल रंग की हैं।

दरवाजे के पास कांच की स्लाइडिंग डोर लगी है।

लोहे के खम्बो में गुब्बारे लगे हुए हैं।

इमारत के बीच में एक बड़ा गुंबद लगा हुआ है।

ट्रेन के डिब्बो की छत लाल रंग की है।

दोनों और बहुत सी मोटरसाइकिल खड़ी है।